एक फैक्ट्री दिखाई दे रही है जिसमें अह--

कुछ चीजें बनी हुई हैं और--

एक पार्क जैसा दिखाई दे रहा है।

बहुत ज्यादा पेड़ पौधे और हवाई जहाज भी दिखाई दे रही है।

कुछ लोग काम कर रहे हैं।

एक शॉप जैसा दिखाई दे रहा है।

भी दिखाई दे रही है।

जैसा दिखाई दे रहा है और एक भगवान की मूर्ति भी लगी हुई है।

शॉप के बाहर कुछ चीजें--

एक बिल्डिंग जैसा दिखाई दे रहा है।

एक फैक्ट्री जैसा दिखाई दे रहा है।

एक आदमी वाइट कलर की शर्ट पहने हुए है।

और एक पंडित जी हवन करवा रहा है।

और यह अलग अलग तरह की साड़ी दिखाई दे रही है।